एक सेंटर टेबल दिखता है और एक डाइनिंग टेबल दिखता है और डाइनिंग टेबल के आगे एक पेसे जैसा पड़ता है।

बहुत बड़ा आइसक्रीम का दुकान बनाया गया है ऊपर सेलिंग बनाया गया है लेटेस्ट और थोड़ा व लेटेस्ट वॉल ट्रीटमेंट है।

के अंदर सब छोटे बड़े साइज का अलग-अलग टी_वी रखे हैं ऊपर सीलिंग है और नीचे फ्लोरिंग है।